आपको बहोत सी पटरिया दिख रही होंगी ये एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

चोनी बेकर्स की दुकान पर हमें बेकरी की अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं।

जोकि हमें हवा देती हैं ये पंखे के पर जो है प्लास्टिक से बने होते हैं।